सामने एक ट्रकतर दिखाई पड़ रहा है जोकि ब्लू कलर का दिखाई पड़ा है इसके पीछे का हिस्सा पिंक कलर और रेड कलर मे दिखाई पद रहा है सामने कुछ ब्राउन ब्राउन रका हुआ है सामने बोरिया रही हुई है। जोकि ब्राउन कलर और वाईट कलर मे दिख रहा है। आध --

इमारत जैसा दिखाई पद रहा है जोकि दो खंड का बना हुआ है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लेक कलर के स्वेटर पहेन रखा है ओर एक बाइक खड़ी हुई जोकि रेड कलर की।

सामने कुरसी दिखाई पद रही है सामने एक एक दीवाल दिखाई पद रही है सामने एक ए_सी लगा हुआ है।

य एक खंभे जेसा दिखाई पड रहा है वहा पे सभी लोग खड़े हुए है कुछ लोग नीचे बेठे हुए है लड़किया डांस कर रही है।

उन्होंने ब्लू कलर और रेड कलर के कपड़े पहेन रखे है नीचे कार्पेट बिछा हुआ है जोकि ग्रीन कलर का दिखाई पद रहा है ऊपर पर्दे लगे हुए हैसामने खंबा लगा हुआ है।

इस पिक्चर मे सामने दो लोग खड़े हुए है पीछे कुछ बांस का डंडा जेसा लगा हुआ है सामने एक बॉक्स रखा है जोकि वाईट कलर का है नीचे एक खटिया बिछी हुई है वह पर एक आदमी खड़ा हुआ है पीछे --

पीछे दीवार का कलर ग्रे कलर मे दिख रहा है नीचे जमीन का कलर भी ग्रे कलर मे दिख रहा है एक आदमी अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए है जोकि ग्रीन कलर मे दिखाई पड़ रहे है।

हमे एक ट्रक दिखाई पड़ रहा है यहा पे बोहोत सारी गिट्टिया भी लगी हुई है साइड में एक स्टेशन दिया हुआ है जो की ग्रे कलर में दिख रहा है साइड मै रिलइंग्स ऑरेंज कलर की दिखाई पड़ रही है।